यहाँ पे योगा चल रहा है योगा क्लास्सेस एंड यहाँ पे सब लोग अपनी मैटस पे बैठे हुए है एंड --

एक आंटी खड़ी हुई है ऑरेंज कलर की साड़ी पेहनी हुई है और एक आंटी नीचे बैठी--

मेरड जैसा एंड यहाँ का पानी बहुत ही ज्यादा क्लीन है और ये टेम्पल बड़ा ही ब्यूटीफुल टेम्पल हैं ।

ये मैट रखे हुए है पैर पोछने के यहाँ पे वैरायटी के मैट रखे हुए है एंड ब्लू रेड --

ये लकड़ी का ये दिखाई दे रहा है यहाँ पे कुछ मुर्तिया बनी हुई है लकड़ी से --